यह आरती बुक सेंटर है जैसे आरती किसी का नाम हो गया और बुक का सेण्टर है।

और कुछ लोग यहाँ खड़े है। यहाँ एक बुकी- बुकिंग सेंटर है जहाॅं पे बुक किया जाता है जाने के लिए--

ये लड़किया नृत्य की मुद्रा में खड़ी है और इन्होने मेंहदी लगा रक्खा है।

पूजा लक्ष्मी जी को पूजा किया जाता है इस दिन इस दिन बच्चे बूढ़े कोई खुश नजर --

और यहाँ मोमबत्ती भी लगाया गया है।

फील्ड हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि हमलोग टहलते हैं थोड़ा सा मैडिटेशन के लिए भी जाते हैं फील्ड में शांति मिलता हैं।

यहाँ पूजा हो रहा है यहाँ सब लोग बैठे हैं और एक लड़का पीला कलर का सूट पहना हुआ है पूजा होता है आत्मा की शांति के लिए भगवान की पूजा इसलिए की जाती है की मन शांत रहता है।

यह एक लग रहा है जैसे की हमारे थाना मंदिर गोपालगंज का ही सीन है और यहां तालाब है और मंदिर भी है और बहुत सारा पेड़-पौधा है।